यहां पर एक बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग में कुछ सत्स-बूक सेंटर की दुकान खुली हुई हैं ऊपर एक बेनर लगा हुआ है दुकान में जिसमे में बुक स्तेंशनरी का नाम लिखा हुआ है यहां पर बहुत सारी किताबे टंगी हुई है कलन्दर टंगे हुए है पेन है।

यहाँ पर एक नदी बनी हुई है नदी का पानी पूरा वाईट कलर का है और ये नदी का पानी बहुत साफ दिख रहा है यहाँ पर दो शिप खड़ी हुई है एक ब्लू कलर की दिख रही है।

यहा पर एक रोड बनी हुयी है रोड किनारे बहुत सारी दुकाने खुली हुयी है यहां पर एक बेनर लगा हुआ है जो किसी सेंटर का है और यहा पर।

बहुत सारे न्यूज पेपर रखे हुई है ड्रॉइंग शिट रखी हुई हैयहा पे एक जेन्स खड़ा हुआ हैजिसने ब्लेक कलर का पेंट वाईट कलर की शर्ट पहना हुआहै यहा पर एक गाडी खड़ी हुई है।